ये शिक्षा व्यवस्था के बढ़िया व्यवस अच्छा व्यवस्था हे इधर पेड़-पौधा भी दिखत हे स्कूल मस्त भी--

इहा पत्थर दिख हे इहा दो गो आदमी भी खड़ा है इहा इहा पानी के बहाव हे गुफा टाइप के लगत हे अच्छा सब कुछ दिखत हे पत्थल वत्थल हे साइड में इधर पेड़-पौधे भी दिखत हे अउ सब--

--ओथे लिखाई पढ़ाई और कुछ- कुछ इहा होत रथे।

हरा-भरा पार्क टाइप के मस्त बनत हे इहा सब कुछ होथे जाथे--

मई फिरे ग कितना साफ एंड जगह हैयहाँ हरा भरा के अगल बगल प्लेट भी लगी हैं सरिए प्लेट--

ये दुकान हे यहाँ सब बैग वेग बेचात हे। सब कुछ लइका मन के बैग हे पढ़े लिखे के पुस्तक कॉपी भी सब दिखत हे डब्बा वब्बा दुकान मन मे जो सामान मिलत थे है वही सब दीखेत है अच्छा दुकान सजावल गईल है।

डीजे देखत हे दर्शक सब कोई मिलके एक साथ मनोरंजन के अच्छा व्यवस्था--।